यह एक टेक्सी स्टैंड है जो कि यहाँ पर हर प्रकार की टैक्सी मिल जाएगी।

मिल जाएगी और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया मोटरबाइक होती है और आपको ये काफी ज्यादा सस्ते दामों में मिल जाएगी।

इसकी बिल्डिंग बोहोत ही ज्यादा ऊँची है और ये पूरी बिल्डिंग पीले कलर ऑरेंज कलर की है और इसमें बोहोत सारी खिड़कियां --

और यहाँ पर चारो तरफ बोहोत सारी और भी दुकाने खुलती हैं और बोहोत सुंदर जगह है ये।

ये एक मंदिर का फोटू है। ये मंदिर ऑरेंज कलर का है और इसके चारों ओर बोहोत सारी हरियाली छाई हुई है।

और इसका आसमान बिल्कुल सफ़ेद है|

और बहुत ही ज्यादा बढ़ियां मेडिकल स्टोर है ये और इसमें कोई बैठा हुआ भी नहीं दिखाई दे --